बहुत प्यारा यहाँ पर लगता है वाटर पार्क मे हम भी गए है।

और कोई इसमे नहीं है कुर्सी खाली लगी है और हेलमेट लगा है डॉक्टर मनोज शंकर शर्मा का ये क्लिनिक है जो की बहुत अच्छा लग रहा है और सबकुछ ठीक ठाक साफ-सुथरा है।

लग रहा है प्रोग्राम वगरा हो रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम और यहाँ पर एक लड़का है जो स्टेज पर नृत्य कर रहा है अअ परफॉरमेंस कर रहा है अ ढेरी बच्चा बीच में बैठे है सब।

और बहुत सुंदर लग रहा है यहां का जगह प्यारा लग रहा है देखने मे और अच्छा --

इ पुल लग रहा है पुल के इधर पूरा गाड़ी लगी है यहां --

जो की ठीक-ठाक लग रहा है टीना का घर है आ और सुंदर है जगह भी बहोत अच्छा लग रहा है देखने मेंऔर पूरा ये अअ पेड़-पौधा है जो की खूबसूरत दिख रहा है सबकुछ ठीक-ठाक है यहा पर।

यहाँ पे ए.सी. लगाया गया है ऐसा लग रहा है जिम का ये है जगह जिम का बनाया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पूरा जगह है बहोत सुंदर लग रहा है यहाँ पर सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है ।

ये केला का एथी है केला है घवद रखा गया है किराना का दुकान है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे सुंदर है दो जिराफ़ है ये जो की जिराफ़ है अच्छा लग रहा है देखने मे सुंदर भी है दो जिराफ़ है ये।